पीछे दो कुर्सियां पड़ी हैं और पीछे दरवाजे लगे हैं बंद है बाहर की साइड ब्लैक कलर की टंकी पड़ी है पानी की --

और दुकानों के आगे बहोत सारे आदमी खड़े हैं कुछ बैठे हैं कुछ औरते खड़ी हैं।

नीचे दो कुर्सियां पड़ी है सफेद कलर की टाइलें बिछाई हुई हैं।

सामने दीवार के ऊपर ए_सी लगी हुई है एक खिड़की है खिड़की के ऊपर पंखा लगा हुआ है टी_वी लगी हुई है।

और यह जैसलमेर का किला हैं।